globbing और export command के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
* globbing ग्लोब्बिंग
* export command एक्सपोर्ट कमांड
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system के साथ परिचित होना चाहिए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
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 operating system और
* gnu bash version 4110
कृपया ध्यान दें कि इस tutorial के अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब globbing के परिचय के साथ शुरू करते हैं
* bash द्वारा filename या पाथनेम का विस्तार रखने यानी carried करने को globbing कहते हैं
* globbing वाइल्ड कार्ड्स को पहचानता और विस्तारित करता है
* यह कुछ मानक वाइल्ड कार्ड्स characters जैसे
#* ऐस्टरिक और
# क्वेश्चन मार्क की व्याख्या भी करता है
अब इसको एक उदाहरण की मदद से समझाते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl + alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
terminal पर type करें ls space ऐस्टरिक dot sh enter दबाएं
यह मौजूदा directory में सारी sh extension वाली फाइलों का मिलान करता है
यहाँ हम देख सकते हैं कि सारी sh files सूचीबद्ध हुई हैं
अब मैं prompt clear करती हूँ अब type करें ls space s ऐस्टरिक dot sh enter दबाएं
हम देख सकते हैं कि s ऐस्टरिक dot sh उन सारी फाइलों का मिलान करता है जो character s से शुरू होती हैं और sh extension रखती हैं
अब आगे बढ़ते हैं
अब type करें ls space square bracket खोलें a hyphen c square bracket बंद करें ऐस्टरिक dot sh enter दबाएं
यह उन फाइलों का मिलान करेगा और प्रदर्शित करेगा जिनका शुरूआती अक्षर a या b या c है
output देखते हैं
हम character a या b या c से शुरू होने वाली सारी फाइलों की सूची देखते हैं
और ये files sh extension रखती हैं
अब आगे बढ़ते हैं और type करें ls space square bracket खोलें caret caret साइन a hyphen c square bracket बंद करें ऐस्टरिक dot sh enter दबाएं
यह sh extension के साथ सारी फाइलों के नामों का मिलान करेगा
लेकिन उनको छोड़ देगा जो character a या b या c से शुरू होते हैं
output देखते हैं आप देखेंगे कि फाइलों के names character a या b या c से शुरू नहीं हो रहे हैं
अब मैं prompt को clear करती हूँ
अब type करें ls space square bracket खोलें capital a small a square bracket बंद करें ऐस्टरिक साइन dot sh enter दबाएं
यह अपरकेस और लोअरकेस a से शुरू होने वाली फाइलों के names का मिलान करेगा
output देखें अपरकेस और लोअरकेस a से शुरू होने वाले और extension sh के साथ वाली सारे फाइलों के names सूचीबद्ध हुए हैं
अब bash में export command देखते हैं
slides पर आते हैं
bash में अपनी खुद की shell के लिए variables local हैं
* local variables उसी shell या मौजूदा shell के द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं
export command variable या function को सारे child processes के एन्वाइरन्मन्ट यानी वातावरण को export करता है
* यह एक local variable को एक global variable में भी बदल सकता है
अब हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे
terminal पर जाएँ type करें myvar equal to साइन lion enter दबाएं
अब type करें echo space dollar साइन myvar enter दबाएं
lion printed होता है
यह वो value है जो variable myvar को नियुक्त की गयी है
अब एक now shell पर जाते हैं
नए shell पर जाने के लिए हम या तो एक नया terminal खोल सकते हैं या type कर सकते हैं slash bin slash bash enter दबाएं
अब variable myvar में value जाँचते हैं
type करें echo space dollar साइन myvar enter दबाएं
एक खाली line printed की गयी है
इसका मतलब है कि variable myvar को नियुक्त की गयी value इस shell को स्थानांतरित नहीं हुई थी
केवल पिछले shell के लिए variable myvar local है और वर्तमान shell के लिए नहीं
अपने पिछले shell पर वापस आने के लिए हम exit type करेंगे
अतः variables को globally घोषित करने के लिए हमें export command प्रयोग करनी है
सीखते हैं कैसे
type करें export space myvar equal to साइन lion enter दबाएं
अब type करें echo space dollar साइन myvar enter दबाएं
lion प्रदर्शित हुआ है
अब दूसरे shell पर जाते हैं type करें slash bin slash bash enter दबाएं
अब मैं prompt clear करती हूँ
अब type करें echo space dollar साइन myvar
lion प्रदर्शित हुआ है
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने export command प्रयोग करके variable myvar को globally घोषित किया है
यह हमे इस tutorial के अंत में लाता है
इसे सारांशित करते हैं अपनी slides पर वापस आते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
* globbing ग्लोब्बिंग
* export command एक्सपोर्ट कमांड
नियत कार्य में
ग्लोब्बिंग के अन्तर्गत चर्चित सारे ऑपरेशंस को करने के लिए एक बैश स्क्रिप्ट लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद